शायद ये दुकान अं मैकेनिकल की है साथ में ऊपर एक बैनर भी लगा हुआ है टोटल कर के।

उसके पास में एक कुर्सी रखी हुई है कुर्सी पर एक बैग रखा हुआ है।

बहोत ही ये सुंदर बहोत ही ब्यूटीफुल नजारा है।

पास में उसके एक छोटा बछड़ा भी खड़ा है गाय के पीठ पर एक लाल रंग का कपड़ा बांध हुआ है।

यह एक रोड है यहां पर दो स्पोर्ट्स बाइक खड़ी हुई हैं दोनों बाइक्स के ऊपर हेलमेट है।

बहोत सारे स्टूडेंट जिसमें लड़के और लड़कियां हैं।

कुछ अलग अलग डिजाइन के डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल के--

मछली वाला पिंक रंग की शर्ट बना है। मछली वाले के पास में।

उसके साथ में कुछ छोटे छोटे पौधे हैं जो सजावटी कर रहे हैं।

भैंस के पास में एक आदमी खड़ा है।

गेट अंदर की साइड में खुला हुआ --

ये एक मॉल है मॉल का फर्स्ट फ्लोर शो कर रहा है।

यहां पर बहुत दो बैनर दिख रहे हैं ऊपर के लिए माइक्रोग्राविटी के नाम से एक अच्छा सा बैनर लगा--

यहां पर फूलगोभी और बहोत सारे टमाटर गाजर--

और भी बहुत सारी पत्ता गोभी जैसी सब्जियां रखी हुई है।

जिसमें कस्टमर आकर बैठेगा और इसके बाहर कोई इंडो वेज करके कुछ लिखा हुआ है।

उसके ऊपर एक बर्गर क्लब के नाम से अलग अलग तरीके की फैक्टिज है।

एक बिल्डिंग बनी हुई है रैलिंग्स के पास में एक पोल है जिस पर लाइट लगाई गई है और ये पिक्चर्स ट्रेन में बैठकर अंदर से क्लिक की गई है।

उसके ऊपर एक बैनर लगा है टी_वी रिपेयर फैक्ट्री करके और इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक शॉप हैं।

यो साइज रिपेयरिंग शॉप की नाम से है।